सामने में भी बहोत सारे ऑटो वगैरे खड़े हैं और बाइक भी और एक गुमटी भी दिख रहा है।

बगल में एक बिल्डिंग है जो वाइट और ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है और एक व्यक्ति इसका फोटो भी ले रहा है।

अभी बिल्डिंग के अंदर भी बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

यहां पे चार व्यक्ति भी दिख रहे हैं एक बड़ी लेडिस है और एक छोटी बच्ची उसको काट केक खिला रही हैं।

इसमें एक कूड़ा दान भी दिख रहा है उसके बगल में बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं ।

यहां पे दो खिड़कियें दिख रहे हैं बगल में भी दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जो की चेयर पे हैं।

इसका का नीचे का फ्लोर जो है वाइट टाइल से बना हुआ है।

ये फिटनेस जिम है जहां पे दो बड़े मिरर लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे डंबल रखे हुए हैं।

ये पुस्तकालय है जिसमें चार अलमारियां और अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई है।

ये एक आइसक्रीम पार्लर है जिसके अन्दर दो बच्चियां खड़ी हैं और यहां पे एक दरवाजा लगा हुआ हैं जो ट्रांसपेरेंट है।

ये रिसेप्शन है जिसके जिसमें द्वार पे गेंदे के फूल से सजावट की गई है।

एक सड़क है जिसके जिस पे एक रथ जा रहा है और इस पर बहुत सारे घोड़े का मूर्ति बना हुआ है।

हॉल है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं और लेते हुए भी हैं।

टिशू पेपर भी दिख रहे हैं और एक स्पून भी दिख रहा है।

यह किराना दुकान है जिसके सामने तीन बोतलें रखी हुई है और बड़े बड़े डब्बे रखे हुए हैं काउंटर के ऊपर।

यहां पे बहत सा चारों तरफ छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं

यह एक सड़क है जिसमें एक बड़ी सी गेट बनी हुई है और उसमें जे सी डी जक्शन में आपका स्वागत है लिखाया गया है।

यहां पे बहोत सारी गाड़ियां भी है और यहां पे दो बाइके भी दिख रही है जिस पे दो आ व्यक्ति बैठे हुए भी है।

यहां पे चार खिड़कियां एक दरवाजा दिख रही है।

और बगल में चूड़ी का काउंटर रखा हुआ है जहां पे बहोत सारी चूड़ियां डब्बे में रखी हुई है।

बगल में भी एक काउंटर है जहां पे बहोत सारी चूड़ियां रखी हुई है।